स्लीपर रोल वाले झूले से झूल रही हैं।

जो की एक तालाब में एक नाव खड़ी हुई है।

सामने व्हाइट बैकग्राउंड है छत दीवार सब व्हाइट कलर के है।